इसके आगे बहुत सारे साथ में--

रूम बने हुए हैं यहां पर एक बहोत सारे--

बहोत सारे लोग हैं यहां पर--

पीछे बहोत सारा जंगल है।

और यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए--

जहां पर बहोत सारे अलग--

तो जैसा कि आप--